एक लड़का खड़ा है सैलून के सामने।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

एक लड़के ने हाथ में किताब पकड़ी हुई है और एक कैमरा लेके खड़ा हुआ है।

और कुरकुरे बिस्किट भी बिस्किट भी है और दो लड़के भी खड़े हो।

कुछ खड़े हैं जिन्होंने सफेद कलर के कपड़े पहने हैं।

एक औरत खड़ी है और एक लड़का खड़ा है।

काफी सारी ब्राउन कलर की कुर्सियां पड़ी है जिन पर लोग बैठे हैं।

सामने एक दुकान है दुकान पर पाइप व्हाइट कलर की पाइप टंगी हुई है।

आस पास कई सारा समान पड़ा हुआ है।

सामने एक मैरिज होम दिखाई दे रहा है मैरिज होम में--

दुकान में सफेद कलर की लाइट जल रही है।

पटाखे जलाए हैं जिसमें से तेज रोशनी निकल रही है।

सामने एक दुकान दिखाई दे रही है।

दुकान के छत पर टीन सेट पड़ा हुआ है।